अलग-अलग तरीके के रंग-बिरंगे --

पिंक कलर की पाइप दिखाई दे रही है पानी की --

यहाँ पर एक चित्र दिखाई दे रहा है देखने में ऐसा लग रहा है की --

और बहुत सारे लोग नजर आ रहे है जो की --

बतक-वतक दिखाई दे रहे है।

यहाँ पर एक चित्र दिखाई दे रहा है। देखने में बहुत बड़ा बिल्डिंग नजर आ रहा है।

और हरे-भरे पेड़-पौधे भी नजर आ रहे है यहाँ पर बगल में --